इसमें एट के बगल में ए.टी.एम. भी है जिससे उम पैसा भी निकाला जा सक --

इस पिक्चर्स में एक मैरिज हॉल का दृश्य दिखाया गया है जिस --

वहाँ पे सामान ये सब उतारा अ-अ चढ़ाने का काम करते हैं।

और अच्छे लग रहें हैं। ये लाल रंग से पेंट किया हुआ है।

बन रहा है और कुछ लोग उसे देखने के लिए आये हुए हैं और लाल पियर हरियर तरह के कुर --